खाई दे रही है मूर्ति काफी बड़ी दिखाई दे रही है। मूर्ति के ऊपर टेंट लगा नजर आ रहा है यहा पे काफी सारा डेकोरेशन किया गया है। मूर्ति को फूलों की मला पहनाई गयी है यहा पे एक लड़का नजर आ रहा है। लड़का पैर छूते दिखाई दे रहा है।

यहा पे काफी अच्छा डेकोरेशन नजर आ रहा है। डेकोरेशन फूलों से दिखाई दे रहा है। फूल पीले कलर के नजर आ रहा है।

यहां पर एक लाल बस दिखायी दे रही हैं। यहां पर एक हरी बस नजर आ रही हैं बस मे कुछ लोग बैठे दिखायी दे रहा हैं यहा पे काफी सारे लोग नीचे दिखायी दे रहे हैं पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं पीछे काफी सारे पेड़ दिखायी दे रहे हैं पेड़ काफी हरे-भरे नजर आ रहे हैं पेड़ काफी बड़े दिखायी दे--

दिखाई दे रही है नदी काफी बड़ी दिखाई दे रही है नदी मे काफी ज्यादा पानी नजर आ रहा है।

यहा पे कई प्रकार की मछली य नजर आ रही है। यहा पे कई बास्केट दिखाई दे रहे है। बास्केट नीले कलर के नजर आ रहे है यहा पे कुछ टब दिखाई दे रहे है यहा पे काफी सारे लोग मछलिया खरीदने आए हुए है।

सेंटर नजर आ रहा है सर्विस सेंटर काफी बड़ा दिखाई दे रहा है सर्विस सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर मारुति सुज़ुकी लिखा हुआ है यहाँ पे काफी सारी कारे दिखाई दे रही है कार कुछ लाइन से खड़ी दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है पार्क काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। पार्क मे सीमेंट के पत्थर दिखाई दे रहे है। यहाँ पे काफी सारे पेड़ पोधों नजर आ रहे है यहाँ पे खंबे दिखाई दे रहे है। खंबों मे कुछ लाइट नजर आ रहे है। यहाँ पे कुछ दीवारें दिखाई दे रही है।